यह एक स्कूल है यहाँ बहुत सारे बच्चे लड़के एवं लड़किया जोगा कर रही है।

यहां काफी पेड़-पौधे दिखाई देते हैं जंगल के बगल में एक फील्ड है।

यहाँ बहुत सारी बिल्डिंगे बनी हुई है।

रोड में ऑटो रिक्शा साइकिल मोटर साइकिल सभी चलते हैं ।